यहां पे मुझे कुछ छोटा सा हॉस्पिटल नजर आ रहा है जिसमें दो डॉक्टर नजर आ रहे हैं डॉक्टर मास्क लगाए हुए हैं ब्लू कलर कपड़े पहने हुए नजर आ रहे--

एक डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप नजर आ रहा है हाथ में नजर आ रहा वाइट कलर का दस्ताना है।

कुर्सी के ऊपर लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं एक आदमी खड़ा नजर आ रहा है गमछा नजर आ रहा है खिड़कियां नजर आ रही है छत नजर आ रहा है आसमान नजर आ रहा।

जीम के ऊपर की खिड़कियां नजर आ रही है और सामने में बालकनी नजर आ रहा है जो पूरा कांच के बना हुआ है।

बहुत सारे पेंट के डब्बे नजर आ रहे है बल्टिया नजर आ रही है।

यहां पे मुझे एक छत नजर आ रहा है छत पे न प्लास्टरा ढलाई का नजर आ रहा है छत के ऊपर बहोत सारे रॉड्स नजर --

बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं बहोत बर्फीला पहाड़ नजर आ रहा है।

यहां पे मुझे नदी नजर आ रही है नदी में बहुत सारा पानी नजर आ रहा है सीढ़ी नजर आ रहा है पोल नजर आ रहा --

प्राइज लिखा हुआ है बहुत सारा खाना का फोटो बना हुआ है फोन नंबर लिखा हुआ है।

चेयर लगा हुआ सोफा लगा हुआ है टेबल लगा हुआ है पानी का बोतल नजर आ रहा है।

बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं एक छोटा सा पत्थर नजर आ रहा है।

एक फोटो नजर आ रहा है गाने का बॉक्स नजर आ रहा है जमीन का फर्स नजर आ रहा है एक टेबल नजर आ रहा है रेड कलर का बैठने वाला नजर आ--

घड़ी नजर आ रहा है ग्रीन कलर का दीवार नजर आ रहा है एक लाइट जल रहा नजर आ रहा है सामने में दो टेबल नजर आ रहा है जिसके ऊपर ग्रीन कलर के--

एक एंट्री बोर्ड नजर आ रहा है एक लंबी रास्ता नजर आ रहा है छोटे-छोटे गमले नजर आ रहे हैं।

यहां पे मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जो बहुत लंबा रस्ता में है दूर में लगा हुआ है पेट्रोल पंप --

कुछ पिंक कलर के सामने में गेट नजर आ रहा जिसमे ताला बंद है एक छोटा सा सड़क नजर आ रहा है बहुत सारे रंग नजर आ रहे हैं।

प्लेट नजर आ रहा हरा रंग के पैकेट नजर आ रहे स्कूल के बैग नजर आ रहे हैं।

लाइट नजर आ रहा है नीचे का फर्स लकड़ी का नजर आ रहा है।

पेड़ नजर आ रहा है अल्बेस्टर नजर आ रहा है सामने में भैंस नजर आ रही है गाय नजर आ रहा है।

सामने में मुझे एक फोटो नजर आ रहा है बॉक्स नजर आ रहा है पर्दा नजर आ रहा है मीटर नजर आ रहा है।

यहां पे मुझे एक दुकान नजर आ रहा है। दुकान में बहोत सारे समाने रखी हुई है। बहुत सारे मिक्सी नजर आ रहे है। बहोत सारे समाने दिखाई दे रही है।